इत्राहा जो बहोत ही पुराना --

सजावट बहोत ही अच्छी है।

रोड पर जाम में फंसे हुए हैं।

और इस ओर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ का फ्रॉग यहाँ जो देखने में झंडे की तरह लग रहा है।

यहाँ एक ऑफिस है।

जहां पे आ चितिक्सालय --

देखकर कुछ कर रहे हैं और बाहर धूप --